इस फोटो में एक झूला दिखाई दे रहा है जो किसी स्टाइल से बना हुआ है ऊपर एक छतरी लगी है जो कि लाल कलर में बनाई गई है।

जिसकीं रात के समय में कुछ लाइटें भी जल रही है।

यह फोटो किसी जंगल या खुले मैदान में ए की है जहां पर बहोत सारे--

यहां पर कुछ गड्ढे भी खोदे गए हैं और बाहर रेत पड़ी है कुछ व्यक्ति उस पास खड़े हैं।

यह फोटो किसी दुकान की है जिसमें बहोत सारे ब बॉक्स बंद बाक्सों में कुछ सामान रखा है।

लाल रंग किया हुआ है और पास में एक दुकान और ये घर बना गया है दुकान के आगे नीले कलर के --

कुछ टेबले भी रखी है और टेबलो के ऊपर कंप्यूटर रखे हैं जो बहोत सारे कंप्यूटर हैं सामने एक बॉल रखा है बॉल के ऊपर कुछ --

यह फोटो एक रेलवे स्टेशन की है जिस पर एक ट्रेन खड़ी है और एक --

रखे हुए कुछ बॉक्स पड़े हुए हैं जो की सफेद या हरे कलर में दिखाई दे रहे हैं नीचे --

खुर्सियां भी रखी हुई है और उस टेबल के ऊपर प्लेटें भी रखी हुई है और पास में बहुत सारे गमलों में पौधे भी लगे हुए हैं।